यहां पर कुछ टंगे हुए है चिप्स कुरकुरे टंगे हुए हैं बिस्कुट भी टंगे हुए हैं कुछ डब्बे रखे हुए हैं दुकान में --

यहाँ पर मुझे एक बहोत अच्छा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहोत अच्छे गुब्बारे लगाए हुए हैं।

पराठे मिल जाते हैं लंच डिनर यहाँ पर चारों तीनों चीजें मिल जाती है और ये कुछ रास्ते बनाया गया है यहाँ पर कार खड़ी हुई है।

समाज के बारे में इन्हें बताया जा रहा है ऊपर बहुत अच्छी यहां पर डेकोरेशन की गई है वाइट कलर का यहां पर पेंट किया गया है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

ये एक पार्क है और इसके चारों तरफ बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई गई है ये शहर के बीचो बीच पार्क है।

और यहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं कुछ झूल रहे हैं और ये बहोत चौड़ा मैदान बनाया गया है।

यहां पर मुझे एकक गली दिखाई दे रही है और यहां पर क्रीम है मक्खन की एक दुकान है और इसके बराबर में एक डेयरी भी है।

और ये टायर ब्लैक कलर के हैं जो देखने में बहोत ही अच्छे लगे हैं ये टायर है।

ये एक घर बनाया गया है जो बहोत ही अच्छा घर बनाया गया है और यहाँ पर कुछ पंखे लगे हुए हैं।

ऊपर हैंड में यहां पर लाइट लगी हुई है खिड़कियां लगी हुई है जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है।

और ये ऊपर का फोटो खींचा गया है यहां पर रेलिंग दिखाई दे रही है जो कि जीने की साइड प लगी हुई है जो और भी अच्छी लग रही है।

यहाँ पर मुझे एक कार दिखाई दे रही है जो कि एक सफेद कलर की कार है और इसके पीछे एक बिल्डिंग बनाई गई है जो कि बहोत ही अच्छी बिल्डिंग है।

इस पे लिखा हुआ है श्री श्याम ट्रेडर्स के नाम से ये दुकान है और उसके बराबर में कुछ और दुकान है जहाँ पर--

और ये फोटो ऑफिस में से कैप्चर किया गया है यहां पर कुछ कुर्सी रखी हुई है।

पर के एक ऑफिस भी है यहां पर और एक स्विफ्ट कार है जो कि आठ सौ है।

यहां पर मुझे एक कंपनी दिखाई दे रही है जो कि इसमें कुछ मशीनें रखी हुई है एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही है खिड़कियां दिखाई दे रही है इस पे लिखा हुआ है श्री श्याम ट्रेडर्स के नाम से ये दुकान है और उसके बराबर में कुछ और दुकान है जहाँ पर --

यहाँ पर मुझे एक पोगा ट्रेडर के नाम से एक दुकान दिखाई दे रही है जो कि--

ये मुझे एक तेल पंपा दिखाई दे रहा है जो कि इंडियन ऑयल के नाम से है और पर एक ट्रक भी आया हुआ है।

यहाँ पर मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ दारू का भी सिस्टम बनाया गया है ऊपर गुब्बारे लगाए हुए हैं।

एक जूस जास की मशीने भी रखी हुई है और चारों तरफ बहोत अच्छी यहाँ पर डेकोरेशन की गई है लाइट लगी हुई है जो देखने में बहोत ही अच्छी लग रही है।

ये मुझे एक मस्जिद दिखाई दे रहा है ये जिसके इमेज मे कुछ कापी किताबें रखी हुई हैं यहां पर कुछ--

ये लड़की है उसे घस रहा है जिसपे ब्लैक कलर का ये पेंट करेगा बाद में जिससे कि स्क्रैच नहीं दिखाई दे--

लड़के घूम रहे हैं कुछ बैठे हुए हैं बहोत सारी यहाँ पर बाइक खड़ी हुई--

यहाँ पर मुझे कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कि एक बहोत ही प्राचीन काल का मंदिर है।

लाल कलर के बोर्ड भी लगाए गए हैं इसके चारों तरफ कुछ शीशे लगे हुए हैं जो देखना बहुत अच्छे लग रहे हैं।